यहा पे एक मैदान है जहा घास लगी हुई हैऑरेंज कलर का और बगल में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है और रास्ते है घर है।

यहा पर एक बिल्डिंग है सफ़ेद रंग की है उसीमे ये ग्रीन हरा हुवा मतलब लाल बॉर्डर दिया गया है।